साइड मे खम्बा दिख रहा है जो आधा ही दिख रहा है और सामने हरे से पेड़-पौधे दिख रहे है और एक काउंटर लगा हुआ है और उसके पास कोई भी नही दिख रहा है।

मैदान दिख रहा है यानि कि रोड दिख रहा है रोड बना नही है खाली मैदान है और हरी कलर की दो बसे है और एक सफ़ेद कलर की बस है जिन पर नंबर प्लेट लगी हुइ है चार टायर लगे हुए है ।

एक बीच में आर्टिफीसियल गार्डन बना हुआ है एक नीला कलर का उस में बेन्नर बना हुआ है नीचे टाइल्स लगी हुई वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई और ब्राउन कलर की टाइल्स लगी है कार्नर पर एक ग्रे कलर का डब्बा रखा हुआ है उस के पीछे एक आर्टिफीसियल पेड़ बना हुआ--

ब्लैक कलर की चेयर्स रखी जिस पर लोग बैठे हुए है ऐसा लग रहा है बहुत ठण्ड है।

इत्ती सुन्दर नजारा है बीच में चैनल गेट लगा हुआ है जो ऊपर छत्त पे जाने का रास्ता है।

किनारे पे जिसमें रस्सी से बंधी हुई है साइड में पहाड़ दिख रहा है छोटा-सा जोकि हरा-भरा भी दिख रहा है हल्का-हल्का पीछे टापू तक दूर-दूर तक कोई नहीं दिख रहा है।

जैसे कि हम देख सकते है ये कोई सरकारी स्कूल जैसा लग रहा है जहाँ दो पुलिस वाले खड़े है दो आदमी खड़े गेट पे एक महिला खड़ी है एक आदमी उससे बात करते हुए दिख रहा है साइड में दो महिला दो आदमी और एक महिला दिख रही है फिर नीला गेट है उसके पास हरा-भरा पेड़ है उस--